और आसमान दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान है इसमे कई सारे कोलड्रिंक रखी हुई है कुछ पानी की बोतल भी रखी हुई है इसमें --

सामने कुछ मैदान जैसा दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी दिख रहे है।

एक घर जैसा भी दिखाई दे रहा है पीछे इसमे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कई सारे घर दिखाई दे रहे है और एक--

कई सारे व्यक्ति बैठे हुए है।

रोड के बाजू मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है पास मे दुकान है और एक मस्जिद जैसी बनी हुई है।

सफेद रंग की है जिसके पास।